आदमी है वो बैठा हुआ है उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए है आधी शीट सफेद और आधी शीट

दीवार का रंग गुलाबी और लाल नज़र आ रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रही है अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे है।